इस दृश्य में सामने की ओर दो बहुत बड़ी सी इमारत नजर आ रही है।

सामने की ओर कुछ लोग भी दिख रहे है और कई सारी गाड़ियां भी नजर आ रही है।

सामने की ओर एक लाल रंग का बोर्ड भी है और शीशे की दीवार भी नजर आ रही है।

छत में कई सारी लाइटें और पंखे भी लगाए गए हैं और नीचे जमीन में टाइल्स लगे हैं।

कई सारे लाल और सफेद रंग के गुब्बारों से सजावट की गई--

यह दृश्य एक सब्जी के दुकान का है जिसमें सामने की ओर कई सारे लोग नजर आ रहे हैं।

ऊपर के हिस्सों में लाइटे लगाई गई है और सामने की दीवार को सफेद और भूरे रंग से रंगा गया है।

इस चित्र में सामने की ओर कई सारी इमारते नजर आ रही है।

सामने की ओर एक गुफा भी दिख रही है।

सामने की ओर भूरे रंग की मछलियां भी नजर आ रही है और सामने की दीवार को हल्के भूरे रंग से बनाया गया है।

सामने की ओर एक बिजली का खंभा भी दिख रहा है जिसमें कई सारे तारे लगाई गई हैं।

एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है और कुछ गमले भी दिख रहे हैं।

कुछ ग्रिल भी दिख रहे हैं नीचे की जमीन सुरमई रंग की है।

यह दृश्य किसी मार्ग का है जिसमें सामने की ओर एक इमारत नजर आ रही है।

असमान में बादल बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं।

नीचे की जमीन को सफेद रंग से रंगा गया है और दीवार में आर्टिफिशियल पौधे लगाए गए हैं।